इसमें एक बरा वाला पेड़ है व्हाइट कलर का।

ओ लोग लाइन लगा के--

ग्रीन कलर का सारी पहन के भी एकठो है।

इसमें अलग अलग टाइप्स का बुक एक कालर है।

यह एक बस्ती का जगह लग रहा है बहुत सुंदर है।

गाइड भी दो ठो है।

और सुखा आला घास भी है इसमें।

ये एक सुंदर सा पक्का घर है।

और घर भी दिखाई मिल रहा है।

एन से है और पीछे साइड मे पहाड़ है।

और बरा वाला ब्रीच लग रहा है उसमें।

अ पिलर में एक पिलर में एक प्लग भी है सुंदर से।

और एक पीकॉक जो यहां में है सामने में।

के अंदर में सब कुछ सामान रखा हुआ है।

पूरा सब कुछ इसमें बिस्किट भी देखने को मिल रहा है मैगी और सब--

ये एक स्टेडियम है और उसका सामने वाला ये जनरल ग्राउंड है।

और सीढ़ी स्टेप्स उठता है उसमें और फ्लावर पॉट्स भी अलग अलग टाइप का कलर में है।

ब्लू ऐसा टाइप का कलर मे है और दुकान दुकान भी एक है।

और टाइल्स भी बहुत सुंदर से साइन साइन से है।

में बंबू शूट है।

और वो जो पोज भी एक ठो दिखने को मिल रहा है।

दो जो खुला हुआ है और एक एयरटेल फोर जी का दुकान भी है और--

और घास भी सूखा वाला घास भी देखने को मिल रहा है।

ये एक लोहा गेट है।

वॉल भी राउंड करके लगाके और स्ट्रीट लाइट भी है ऐसे राउंड करके।

उसका जस्ट सामने में जो दो बैग है ट्राली बैग रेड कलर का एक ग्रीन कलर का एक वो भी प्लास्टिस से बांध के है।